यह एक बेडरूम का इमेज है जिसमें बहोत खूबसूरत से पर्दे टंगे हुए हैं साइड में टीवी है उसके ऊपर सेटउप बॉक्स है।

और ये रूम काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। एक साइड में छोटा सा टेबल है जो घर को और खूबसूरत बना रहा है।

यह एक ए.टी.एम. मशीन है जो जगह-जगह पर डाली जाती है ताकी लोगों को सुविधा हो सके।

घेर गया है ताकि लोग गिरने से बचे।

जिसमें काफी आकर्षित खूबसूरत-खूबसूरत फर्नीचर रखी हुई है।